देख सकते हैं मंदिर है जहां मंदिर में हवन अवन हो रहा है आजू बाजू में देखो कुछ लोग हैं जो हवन करवा रहे--

रिसॉर्ट है जहां देखो आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जंगल है घना जंगल है अभी शायद पानी गिरा हुआ होगा देखो की रेल की ट्रैक की ये वायर गई हुईं हैं आजू बाजू--

देख सकते है एक बिल्डिंग है ये पिंक कलर की इसके बाजू में देखो कि एक बाजू में एक और बिल्डिंग है जहां आजू बाजू की कोई हॉल है ये।

के नीचे देखो कि एक गाड टाइप का मूर्ति बनी हुई है। पार्किंग के लिए जो कार खरी हुई है।

देख सकते है एक मेन रोड है जहां मेन रोड में आजू बाजू कुछ लोग है गाड़ी खड़ी कर के बैठे है कार खड़ी हुई हैं दो तीन घर है आजू बाजू घर है।

देख सकते हैं एक किराने दुकान है ये किराने की दुकान में आप देख सकते हो बिंगो चिप्स रखा हुआ--

जय शारदा माता जी आजु बाजू मे ये देखो ट्रेक बहोत बड़ा उसके पीछे एक और ट्रक खड़ा हुआ शाम का टाइम है ये--